एक शॉप दिख रहा है मोल का कुछ टॉप्स दिखाई दे रहे है और जेंस के शर्ट्स दिखाई दे रहे है।

एक रेस्टोरेंट दिख रहा है रेस्टोरेंट मे काफी सारी टेबल्स और चेयर्स दिख रही हैं एक मेनू कार्ड दिखाई दे रहा है।